फ्रुटो की खूबसूरत बास्केट पड़ी हुई हैं बड़े-बड़े केले हैं माल्टे हैं।

स्विमिंग पूल है ये स्विमिंग पूल में काफी सारे अरे बने हुए हैं झूले--

जंगलात में सूखे दरख्त खड़े हुए हैं और मौसम सुहाना घटाए--

ये फाइले दफ्तरों में काम आते हैं इसमें इंपोर्टेंट वर्क रखते हैं।

और भी काफी गाड़ियों के मुताबिक सामान पड़ा हुआ है।

ये बहुत पालतू और वफादार जानवर होते हैं इनको पाना चाहिए।

कितना अच्छा और प्यारा फ्रूट तरतीब से पड़ा हुआ है यहां काफी सारे ये फ्रूट आलू बुखारा आम --

दरख्त की कटिंग कितनी जबरदस्त की हुई है छोटे-छोटे दरख्त की मानियन गोल प्याले --

फलियां भी पड़ी हुई हैं इधर भी और उधर भी काफी सारा ब्रांड सामान है ।